यह तस्बीर को देख के लग रहा है की ये कोई स्टोर लग रहा है स्टोर यहाँ पे लिखा हुआ है की केशव --

इंसान का भी पता नही चल रहा है कौन-कौन है लेकिन इतना पता चल रहा है की यहाँ पार्किंग में सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए है और कुछ बातें कर रहे है ।

यह शायरा नर्सिंग होम है यहां पे बहुत सारो को इलाज किया जाता है मरीजो का --

एडमिशन या एग्जाम देने के लिए आये होंगे तभी यह फोटो क्लिक किया गया है स्कूलवा बहुत ही सुन्दर बनाया गया है यहाँ पे।

और कुछ पक्षी जो की यहाँ पानी में अपने शिकार ढूंढने पानी में उतर रहे होंगे तभी तस्वीर को क्लिक किया गया होगा कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं ।

यह तस्वीर देखने से लग रहा है की यह कोई योगा क्लब लग रहा है मुझे यहाँ पे बहुत सारी महिलाये --

बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे एक आदमी जो की पूल के नीचे की तरफ से देख रहा है तभी यहाँ पे किसी ने --

तस्वीर को देखने से मुझे लग रहा है की ये कोई बाहर का सीन लग रहा है मुझे यहाँ पे यहाँ पे |

हेलो गाइस मुझे देखने में शर्मा ऑडियो यहा पे लिखा हुआ है साइड में जो की

बीबी होगी वह साइड में फोटो क्लिक करा रहे है कितना बढ़िया डेकोरेशन किया गया है शादी में बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन किया गया हैं ।